यख मा जी एक नदी कर छा यखम एक नाव कर छा नाव मा जी भी कुछ लोग बैठ्यां छन सामनि मा जी कई सारा हरयां भरयां डाला भी छन दिखेण लग्यां यख मा जी सूर्य भी छ दिखेण लग्युं जु अस्त छ होण लग्युं।

यख पिछड़ि मजी एक एल.सी.डी. टी.वी. कर छै लगी यखम रंग बिरंगी लाइट छन जगन लगी यखमाजी एक बोल्ड कर पोस्टर लग्युं पिछाड़ी माझी नीली रंगली पिंगली लाइट छन |

यख मा जी एक चाय की ठेली छा यख मा जी कई सारा कप छन रख्यां कूल्ड छन रख्यां।

यख मा जी एक बैंक छा यह बैंक कु नाम भारतीय स्टेट बैंक छा।

यख मा जी पिछाड़ी दरवाजु दिखेण लग्युं लाइट दिखेणी दीवाल मा जी एक ए.सी भी छ लग्युं लाइटन यख फण कई सारी लगीं टंकी छे यख साइडम रखीं।

यख मा जी कई सारा लुंगना छन दिखेण लग्यां यख मा जी कई सारा हरयां भर्यां डाला छन यख मा जी छन।

यख मा जी एक बुडया आदमी छा यैका हाथ पर एक किताब छा ईं किताब पर वॉर छ लिख्युं।

यख सिम भी मिल जांदा छन यख मा जी एयरटेल का सिम मिलदा छन यख मा जी लोग अपणी फोनो पर रिचार्ज करोण औंदा टीवी पर रिचार्ज करोण औंदा यखम लैपटॉप एक रखयूं।

कुछ लड़का साइड मा बैठ्यां यखम एक स्टूल रख्युं स्टूलम एंच पाणी की बोतल रखीं यख मा जी एक पाणी की बाल्टी छ रखीं यख मा जी एक पोस्टर छ लग्युं बड़ु बारिकु।